जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में पीछे बहोत सारे हरे भरे पहाड़ हैं।

सामने की ओर एक रहने के लिए स्थान दिखाई दे रहा है जो की सफेद और हरे कलर में पेंट है।

बीच में एक घर जैसा दिखाई दे रहा है।

एक गाड़ी भी जाती हुई दिखाई दे रही है और पीछे रोड भी है।

इस फोटो में पंखे और कूलर दिखाई दिए हैं।

कमरे का कमरे की दीवारें सफेद कलर की हैं और कमरे में सोफे और टेबल रखी हुई हैं।

और बीच में एक सफेद रंग का घर भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक मशीन दिखाई गई है।

इसमें बैठने की जगह बनी हुई है पीछे एक टेबल रखी हुई है।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

इस फोटो में पीछे आसमान नीले रंग का है।

और एक ऊंचा सा पहाड़ भी जैसा दिखाई दे रहा है।

पीछे एक हरे कलर का खेत भी है।

यह फोटो एक मैदान की दिखाई दे रही है जिसमें सामने--